यहाँ पर कई सारे नारल के पेड़ है सजावट की गयी है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नेट का ये लगाया है लोगों को सोने के--

चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा घास पड़ी हुई है जहां पर चंद लोग बैठे हुए हैं यहां पर पहाडी इलाका मौजूद है जहां पर बड़े-बड़े चट्टान पहाड़ मौजूद है।

इस चित्र मे हम देख सकते है। की यह एक एस_एस_पी_एम मेडिकल कॉलेज है। मतलब यहाँ पर सारे अ जोभी साइन्स वाले छात्र होते है। उन वो वो लोग पढ़ाई करते है।